यह एक रोड दिख रहा है। रोड में पेड़ भी दिख रहा है।

स्कूटी बाइक भी दिख रही है और लोग भी दिख रहे हैं।

यहां एक कॉफी शॉप है। यहां बहुत से वैरायटी के कप मिल रहे हैं।

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे है यह एक थिएटर हैं।

यह एक फिटनेस जिम दिख रहा है।

जिम की मशीनें उपलब्ध है इस जिम में।